इस चित्र में दिखाए गए।

मैदान जिसमें कि ढेर सारे--

प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं।

पोस्टर लग रहा है।

लोगों के बीच यहां फिटनेस को--

इस चित्र को देख के यह लगता है कि यह कोई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है जहां पे--

ऐसे निकासी के लिए कुछ गए व्यक्ति हैं।

एक गल ए बगीचा सा बनाया गया है।

कोई दुकान है अर्थात इस दुकान का नाम जगदंबा इंटरप्राइजेज है।

धार्मिक स्थल का हिस्सा हो अर्थात यह--

चित्र में दिखाया गया है कि बच्चे यहां पे खेल-कूद रहे हैं। जी जिन्हें--

खेल कूद में मगन है तथा इस इसमें--

चित्र है जिसमें कि जिसका नाम साईं राम भोजनालय भी है इसमें एक --

खड़ी हुई है सा सामग्री खरीदने के लिए--

वृद्ध महिला भी नजर आ रही है।

चित्त स्थित किए हुए हैं जैसा की लग रहा है यहां पे।

प्रार्थना के लिए सभी छात्र छात्राएं और--

इस चित्र में विभिन्न पर हमारे विभिन्न देवी देवताओं का वर्णन किया गया है।

भव्य दर्शन जो कि इन चारों पत्थरों के --

ये पौधे या पेड़ लगे हुए है।

इस चित्र में बच्चा एक बच्चा--

नाम का बैनर भी दिया गया है इसके बाहर एक स्कूटी खड़ी है।